सामने में सफेद रंग की बहोत बड़ी सी बिल्डिंग बनी दिखाई दे रही --

कुछ पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं सामने एक गार्डन नजर आ रहा है।

दी हुई तस्वीर में बहोत सारी बकरियाँ दिखाई दे रही हैं।

पीले रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं। नीले रंग का बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

दी हुई तस्वीर में कुछ लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।

एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है। एक लड़का साइकिल हाथ में लिए खड़ा नजर आ रहा है।

इसमे एक इस्क्रीन पे एक कपल की बड़ी सी फोटो दिखाई दे रही है।

एक सफेद रंग की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कुछ तार दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे एक बड़ी सी गुफा नुमा दिखाई दे रहा है।

हरे रंग के बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहें।

दे रही हैं और हरे रंग का गुंमज बना दिखा --

बड़ी-बड़ी नावें दिखाई दे रही हैं।